और यहाँ पे एक नाद दिख रहा है जिसमें कुछ घास पड़े हुए हैं ।

और कार के बगल में एक आदमी खड़े है और यहाँ पे दो बाइक्स दिख रही हैं ।

यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसके वाल का कलर ग्रे है और उसपे एक बोर्ड लगा हुआ हैं ।

ये एक स्विमिंग पुल है जिसके अन्दर बहुत सारी लडकियाँ दिख रही हैं ।

यहाँ बहुत सारे लकड़ी के पटरे है और कुछ रोड्स दिख रही हैं ।